इस तस्वीर में दिख रहा है गार्डन है और इस गार्डन में रंग-बिरंगे फूल है जैसे कि गुलाबी है और पीले हो लाल हैं।